और यहां पर बहुत सारा बड़ा--

सामने यहां मुझे एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है।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

जहां आगे की तरफ एक शटर दिखाई दे रहा--

और यहां पर एक भूरे कलर का गेट दिखाई दे रहा है और बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी है।